जो पूरा रूम की तरह बना हुआ है इसमें फूल-पत्तियां भी आगे लगा हुआ है और इसे किसान लोग अपना इसे दूर-दूर तक अपना सिंचाई के साधन घर बनाया हुआ --

एक लिखावट से चिपकाया हुआ जो काफी खूबसूरत लगती है।

एक ड्रम हैं नीचे रेड कलर का नीचे कुछ बिछा हुआ हैं फूल-पत्ती से सजा हुआ है बाइक लगा हुई है।

यहाँ एक पुल का भण्डार हैं।